यह एक नदी है जिसमे कुछ फूल के पौधे डूब चुके हैं।

और उसके पीछे में एक बगीचे जैसा बहोत सारे जंगल प्रतीत हो रहा है। जिसके नीचे में एक ट्रेक्टर भी खड़ा--

--और वह एक पानी की टैंक की तरफ मे जा रहा है जीसके आसपास एक गांव भी है जहां बहुत सारे बड़े-बड़े घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।